ये चित्र में दो लड़के खड़े हैं और दो लड़के ऐसा प्रतीत हो रहा है इन दो लड़कों को देख कर की यह दोनों किसी शादी के समारोह की तैयारी करने मे जुटे हुए है और बाकी लोग भी उनका साथ दे रहे हैं।

यह चित्र भी एक डाक घर की है जिसमे एक बाइक सवार बाइक पर डाक घर आया है और बाहर वहां पर पार्किंग स्थल मे काफ़ी तरह की साईकल मोटरसाइडिल और गाड़िया खड़ी हुई है।

इस चित्र में भी दो युवतियाँ और तीन युवक है एक युवक ने काले और सफ़ेद रंग की शर्ट डाली हुई है।

और इनके बारे मे लोगों को बता रही है अपने धरम के बारे मे लोगों को बता रही है।

ये तस्वीर में लिखा है पैराडाइज़ स्कूल हैयर और स्पा ये एक पार्लर की तस्वीर है।

जिसका एक शटर बंद करा हुआ है दूसरे और से उस ए. टी. एम का दरवाजा खुला हुआ हैऔर उसके ऊपर वृक्ष है।

ये चित्र एक नाई के दुकान का है जिस पर दो कुर्सियां रखी हुईं है और दोनों कुर्सियां नीले रंग की पेंट हुआ -हुआ है।

टाइलों पर माँ सरसवती शिव परिवार गणेश जी माता लक्ष्मी और चिंत पूर्ण माता जी की तस्वीर लगी हुई है और ये सारा मंदिर फूलों से सजा हुआ है बहुत ही सुन्दर प्रतीत हो रहा है।